तो साइमधुली अ रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ है बहुत सारे चेयर्स दिखाई दे रहे हैं।

और ऐसे कुछ तंबू जैसे बांधा हुआ हैं अंदर आइस क्रीम खाने के लिए टेबल भी हैं और साइड मैं कुछ पेंट --

साइड में एक मंदिर लग रहा है जहां पे पत्थरें का शेड बनाया हुआ है एक ऊपर एक नीचे।

एक पेट्रोल पंप है जहां पे अह --

और एप्पल दिख रहा है और एक मटका दिख रहा है उसके ऊपर एक ग्लास है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जहां पे नीचे जो है शटर है और उसके ऊपर भी शटरस के शॉप्स हैं।

के_जी_न करके कुछ लिखा हुआ और एकदम कॉर्नर पे कुछ लिखा हुआ है।

जहां पे रैक बनाया हुआ है अलग-अलग सेल्फ्स बना है कांच --

अ लगाया हुआ है ओ रेड कलर और डिजाइन किया हुआ है।

यहां एक शॉप के सामने एक बीयर्ड फियर द बीयर्ड करके--

और साइड मे जो थीम अ है वो रेड और ब्लैक कलर का ऊपर व्हाइट कलर के लाइट ल --

यहां पे कुछ हरिद्वार क्षेत्र सोन--

और मेला करके कुछ है यहां पे कुछ मेला लगा हुआ है ऐसे दिखाई दे रहा है जहां पे जो ऊपर डेकोरेशन है।

एक बुड्ढे अंकल का सर दिखाई दे रहा है वाइट कलर बाल और टकला और एक अह जो कमाए --

गार्डेन में छोटे छोटे ग्रास उगे हुए हैं और रेड कलर के फ्लावर के प्लांट हैं।

और बहुत सारे लोग ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं।

और आजू बाजू येलो कलर के बंगलो दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बहोत सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किया हुआ है ग्लास का स्लाइड्स बनाया हुआ --

ये एक इलेक्ट्रॉनिक अअ वालों का दुकान है।

और स्विंग लगाया हुआ है और स्लाइड्स भी है एक सीधा है और एक गोल वाला है एक लड़का जो है खेल रहा है स्लाइड से और --

अह ए_सी दिख रहा है और एक कार दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा रोड दिख रहा है।

और आजू बाजू बाजू में उसके अ ये बनाया रोड बनाया है।

ये एक स्कूल के बाहर कुछ बनाया गया है।

और ऐसे कुछ बीच में लिखा हुआ है रेस करके और कार दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट्स वगैरा दिख रहा है।

और ए बहोत सारे लोग बेंच पे बैठे हुए हैं साइड में स्कूल के बच्चे दिख रहा है और एक बैग --

ये एक फ्रूट का शॉप है जहां पे बहोत सारे फ्रूट्स लटकाया हुआ है।

जैसे कि केला है सेब है और पाइनएप्पल है और --

और एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है बहोत सारे कैरेट दिखाई दे रहा है एक अ --

और यहाँ पे एक अह टेबल है जिसके ऊपर दो तीन पी_सी लगाया हुआ है।

और ए_सी का रिमोट है साइड में कुछ बॉक्स लॉकर जैसे है।

और मिल्टन का बोटल है चेयर्स लगाया हुआ है।

लोटस हॉस्पिटल करके बहोत सारे लोग जो है वो पार्क किए हुए कार और बाइक स्कूटी वगैरा सामने --

और जो रिवर के उस तरफ बहोत बड़े बड़े पे अ पहाड़ दिखाई दे रहे है।

अ जैसे कि कार का कुछ निकालने के लिए है।

यहां पे खाने का लिखा हुआ है और अह बहुत सारे लोग जो है ले रहे कुछ और एक रेड कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक गजानन फास्ट फूड करके लिखा हुआ है।

प्योर वेज का और स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं और काउंटर के यहां पे तीन लोग खड़े हुए हैं एक आंटी और दो अंकल ।

यहां पे चलने का मशीन है और एक अंकल जो है वो वेट लिफ्टिंग का कुछ हैंड का कर रहे हैं।